में आते-जाते यहाँ से दिख रहा है और भी बसें खड़ी हुई हैं दूर में।

एक चित्र बना हुआ है जिसमे कप का चित्र बना हुआ है।

और सामने में कुछ समान रखा हुआ है और एक चश्मा भी रखा हुआ है।

पीले कलर के फूल लगे हुए हैं।

यहाँ पे कुछ लोग पत्थरों के बीच में से झाक रहे हैं मतलब --

यह पे एक पहाड़ी दिख रही है ऊपर में। बीच में एक घर दिख रहा है और --

यहाँ एक मैदान दिख रहा है जहाँ पर बहोत सी है और --

छोटी और बड़ी भी है।

बच्चो ने येलो कलर की ड्रेस पेहन रखी है।